पेड़ ही पेड़ उगे हैं और पागल बादल हो रहे हैं।

यह एक कैफे की तस्वीर है यहां पे बहुत सारे मेज और कुर्सी रखी हुई है।

यहां पे बहोत सारी चिप्स रखी हुई है।

पूजा कर रहा है और यहां पे बहुत सारी लाइटे लग गई ऊपर--

यहां पर चेयर भी रखी हुई है बैठने के लिए--

यह एक कैफे की तस्वीर है यहां पे बहोत सारी--

टेबल और कुर्सियां भी लगी हुई है।

यहां पे एक बिल्डिंग बनी हुई है यहां पे बहोत सारे आदमी और लड़के जा रहे हैं यहां पे एक आदमी खड़ा हुआ--

सामने एक वाइट कलर की स्कूटी खड़ी हुई है।

यहां पे दो स्कूटी खड़ी हुई है अंदर एक आदमी बैठा हुआ है एक लेडिस बैठी हुई है यहां पे कांच के दरवाजे लगाए गए हैं।

पीछे बहोत सारे पोस्टर लगे हुए हैं।

खेत है जिस पे फसल उगाई गई है वहां पे एक रूम बना हुआ है जिस पे व्हाइट कलर का पेंट किया गया है और यहां पे बहुत सारे पेड़ ही पेड़ उग उग रहे हैं।

यहां पर कुछ लोहे की सीढ़ियां बनी हुई है और वहां पे कॉपी पेन पेंसिल रबर सब कुछ मिलता है।

यह एक कैफे की तस्वीर है यहां पे मेज और कुर्सी लगाई गई है मेज पर पानी की बोतल नमक और ग्लास रखा हुआ है।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

यहां सोफे पर एक बैग रखा हुआ है जो पिंक कलर का है।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

जिसपे व्हाइट कलर की टंकी रखी गई है।

यहां पे बंच बर्तन मांजने वाला साबुन भी है और यहां पे बहोत सारी चीजे रखी हुई है।

यहां एक दुकान कि तस्वीरें है यहां पे बहोत सारे डब्बे रखे हुए हैं।

आदमी ने ऊपर कैप पहनी हुई व्हाइट कलर की यहां पे एक घड़ी लगी हुई है टाइम देखने के लिए यहां पे बहोत सारी लाइटे लगी हुई है।

यहां पे बहोत सारी खिड़कियां लगी हुई है कांच की--

यहां एक ऑफिस की तस्वीर है यहां पे बहोत सारी मेज और कुर्सी रखी हुई है।

और यहां के चेयर पे बैठे ये लोग काम कर रहे हैं और यहां पे पोस्टर लगे हैं।

यहां पे स्टेज सजाया गया है इसे बहुत फूलों से और बैलून से सजाया जो बहुत रंग बिरंगे लग रहा यहां पे --